दुकान के बराबर में एक और दुकान दिखाई दे रही है जिसमें से एक अंकल बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ पर कुछ कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की दीवारें काफी गंदी दिखाई दे रही हैं।

शादी हॉल है जिसका गेंट म फूलों से सजा हुआ है जिसमे दो हार्ट शेप लगे हुए दिखाई दे रहें हैं जो काफी सुन्दर लग रहें हैं।

यहाँ पर एक पिंक कलर की बस खड़ी हुई है पिंक कलर की बस के पीछे एक ग्रीन कलर की बस खड़ी हुई है। बस मे कुछ लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है। कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर रास्ते पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है बस के आगे भी काफी बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।